यह एक रेस्टोरेंट है इसमें कुर्सियां और मेजे रखीं हुई है।

यहां पर लेडीज़ और जेंट्स खाना खा रहे हैं।

यह एक कंप्यूटर की शॉप है।

यह एक पहाड़ी इलाका है।

यहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

यह एक डेनिम सैलून की शॉप है।

यहां पर एक टीचर कुर्सी पर बैठा है जो की बच्चों को पढ़ा रहा है।

उसे पर पिला कलर हो रखा है और उसके पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारी टीने डली हुई दिख रही--

यहां पर दो सोलर प्लेट रखे हुए है और इसमें एक टैक रखा हुआ हैं।

जिन पर अमृत हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

और उसके पीछे दो कुर्सियां रखी हुई है और यहां पर एक बोर्ड लग रहा है।

और इसके सामने एक शीशे का गेट लगा हुआ है।

और यहां दो कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे मूर्तियां रखी हुई है।

यह एक एक मोटरसाइकिल के सामान की दुकान है।

यह एक बहुत बड़ा तालाब है।

यहां पर बहुत सारे रूम और विंडो है और इसके बराबर में जा रहा है।

यहां पर लेडिस और जेंट्स बैठे हुए हैं।

और इस दुकान में वाइट कलर हुआ है और यहां पर बैंगनी कलर के पर्दे डले हुए हैं।

यह एक बच्चों के खेलने की जगह है।

इन पिलरों पर पल्ली लटकी हुई है।

यह एक बारात घर है इसमें येलो और व्हाइट कलर की कुर्सियां डली हुई हैं।

इसको येलो और पिंक कलर के टेंट से डेकोरेट किया गया है।

यह एक मंदिर है जो की लकड़ी से बना हुआ है।

और यहां पर नीले और ग्रे कलर की चादर बिछी है जिस पर यह सभी सामान रखा हुआ है।

और यहां पर स्टील कि चेयर रखी हुई है।

और इसमें एक विंडो भी लगी हुई है।

यह एक मस्जिद है यहां पर बहुत से व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए बैठे और कुछ खड़े हैं।

और यहां पर एक कांच का गेट लगा हुआ है और इसके ऊपर टीन डली हुई है।

और यहां पर चार बड़े बड़े पोस्टर में फास्ट फूड का समान लिखा हुआ है।

इसमें बहुत से औजार रखे हुए हैं।

पंखे मिक्सी प्रेस बोर्ड आदि सामान है।

और यहां पर एक हरे रंग की पानी की बोतल रखी हुई है।

बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।